और बॉक्स और यहाँ पर किराना का सामान भी रखा है और दुकान के अंदर दो स्टूल दिखाई दे रही है जो की रेड और ब्लू कलर की है।

और एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दुकानें भी है और ठेले भी लगे हुए हैं।

ए.टी.एम. के ऊपर एक पम्पलेट लगा हुआ है।